सूरज भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक लड़का सामने इन्हें गाइड कर रहा है।

और दो आदमी खड़े हुए हैं।

पीले गुब्बारे लगे हुए हैं।

और यहां पर ऊपर की ग्रिल भी लगी हुई है।

और टाइल भी लगी हुई है।

इस चित्र में हमे किताबों की दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारे बहुत अलग अलग प्रकार के सोफे पड़े हुए है मेज भी पड़ी हुई है।

खंभे पर लाइट भी लगी हुई हैं।

जिसमें ऊपर गाटर सीले पड़े हुए हैं और यहां पंखे टंग रहे हैं।

इस चित्र में हमें यह पैलेस दिखाई दे रहा है।

और यहां ग्रिले भी लगी हैं नीचे मैट बिछाए हुए हैं।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

पीछे सफेद रंग की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।